और आदमी सब भी जा रहा रहे हैं। इधर बस - वस भी लगा हुआ है। बहुत ही खुबसुरत बस सब है। और इधर पोल - वोल नजर आ रहा है।